यहां पे दो विंडो बने हैं और वहा पर कुछ लोग फॉर्म लेकर के खड़े हुए दिख रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई दिख रही है और एक आदमी फोन पे बात करता हुआ दिख रहा है और बाहर जाली लगी हुई है। कैमरा भी लगा हुआ है।

कार्यालय के बाहर भी बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं। वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए एक आदमी के हाथ मे पीले कलर की थेली भी दिख रही है। कार्यालय का कलर लाल है।

यहाँ पे बहोत सारी लाइट लगी हुई स्टेज पे और एक बहोत सारे स्पीकर लगे हुए हैं। ब्लैक कलर के स्पीकर रखे हुए हैं। बड़े बड़े स्पीकर हैं और लाइट लगी हुई --

पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। यहां पे घर बन रहा है।

और घर के यहां पे चारों तरफ सारे घर बने हुए हैं। एक हमें ईटे का घर दिख रहा है उसके ऊपर काले कलर का ड्रम रखा हुआ है और सामने बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं नीचे पाइप बिछी हुई है।